यहां एक बड़ा सा नेट का जाली दिखाई दे रहा है और यहां पे बोहोत सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।